साइड में बहुत सारे सामान रखे हुये है व अन्य प्रकार के सामान है और अंदर दो मैडम खड़ी हुई हैं।